यह सामने एक बस खड़ी हुई है और कुछ व्यक्ति जा रहे हैं।

जो कि लाल रंग के फ्रेम में है और यहाँ काफी सारे बैलून है। एक व्यक्ति चेयर पर बैठा है।